यहां सामने शीशा भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर --

इस इमेज में यहां पर सामने कुछ मसालो के पैकेट्स लगे हैं।

जैसे मीट मसाला मैगी का पैकेट्स बॉर्नबिटे का पैकेट्स --

इस इमेज में सामने एक बैंक दिखाई दे रहा है जहां पर --

लैपटॉप भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

फूलों का डेकोरेशन नज़र आ रहा है।

कुछ बच्चों की भीड़ नजर आ रही है।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

इस इमेज में सामने यहां पर एक मूर्ति दिखाई दे रहीं हैं उसके सामने दो तीन लोग बैठे नजर आ रहें हैं।